आप यहां इस पिक्चर में--

जिसके बगल में एक बहुत बड़ी सी ट्रैक्टर खड़ी हुई आपको दिखाई--

सुंदर दिखाई दे रहा है।